पेंट्स के बकेट्स रखे हुए है जैसे दीवार वगैरा पेंट करने के लिए--

ये स्पा और सलून है जहां पर आदमी लोग अपने बाल काटने के लिए आते हैं।

पूरा खाली दिख रहा है और कुछ पेपर्स वगैरा रखे हुए हैं।

के बाहर का बोर्ड है। जहां पर कपड़े वगैरा से--

ये एक सत्यम होटल की फोटो है जहां पर--

यहां पर लिखा हुआ है सुदामा की कुटिया।

और भी दो भगवानों की फोटो लगाकर एक आदमी पूजा कर रहा है।

यह एक टेंट स्टेज की फोटो दिख रही है जहां पर पीछे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

एक सोफा भी रखा हुआ है ब्लैक कलर का।

यहां पर एक ऑफिस टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ है और वहां पर लैपटॉप और--

ये एक बेडरूम की फोटो दिख रही है जहां पर एक बेड लगा हुआ है। उसमें पर्पल कलर की तकिया रखी है।

और रेड कलर की दो कुर्सियां रखी हैं वहां पर।

की टी_शर्ट पहनकर डमी खड़ा करिए हैं।

और कुर्सियां भी स्टील के है और टेबल में कांच लगा हुआ है।

यह टोल नाका है जहां पर गाड़ियों को रोक कर पैसे दिए जाते हैं टोल के।

ये एक क्लासरूम की फोटो है जहां पर बहोत सारे बच्चे लोग बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं।

यह बेड बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ब्राउन कलर के पर्दे लगे हुए हैं।

भट्टी रखी हुई है उसमें कढ़ाई और डेकची चढ़ी है जिसमें समोसे और आलू बंडे निकले रखे हैं।